कुछ तपियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और नीचे जमीन --

टेबल पे रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं लेफ्ट --

इस दीवाल का कलर व्हाइट और सीमेंट था इसमें काँच भी लगा हुआ है।

एक खम्बा गड़ा हुआ है से भी दिखाई --

यह पे एक रोड दिखाई दे रहा है और बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे --